और लोगों को समझा रहे हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए और यहां पर पुलिस भी हैं।

हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सड़क से फोटो खींचा गया है और यहाँ पर कुछ लोग देखाई दे रहे हैं।

हम इस फ़ोटो में देख पा रहे है कि यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा है और ये काफी मेहनत से--

सजाई गई है और यहाँ पर काफी सारी ये आंटियाँ योगा कर रही हैं और और ये अपना वजन कम करने के लिए योग करती हैं ।

हम इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि यह एक होटल है और ये होटल काफ़ी बड़ी है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर खाना खाने आते हैं।

हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यहां पर छब्बीस जनवरी का प्रोग्राम मनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की गई है।

यहाँ पर ऐसे घर को काफी अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है।

येह होटल की दीवार का कलर हरा है और यहां पर बोहोत सारे लोग खाना खाने आते हैं। यहां पर खाना काफी अच्छा मिलता है और बोहोत ही रे --